ने बहुत सारे कपड़े उस्काए हुए हैं जिनका रंग मुख्तलिफ है।

यहां पर एक नागरिक अ नागरिक के सामने वो एक बहोत सारे फूल रखे है जिनका रंग माल्टा है और महिला के सामने एक--

बहोत सारी किताबें रखी हुई दिखाई दे रही हैं जो की एक मेज पर रखी है मेज लकड़ी का बना हुआ है इसका रंग ब्राउन है।

ब्राउन एक रंग की श-शर्ट पहनी हुई है और यहां --

भी मौजूद है जो कि बहोत ही बड़े दिखाई दे रहे हैं और एक दीवार बनी हुई है जिसमें मुख्तलिफ तरह के रंग किये हुए हैं और एक पाइप भी गुजर रहा है जिसका रंग पीला है।

गए फूलों की मालाएँ लगजर रखी हुई लही है और इन --

और इस हाथ में एक साइकिल भी गुजर रही है जिसका रंग काला है और यहाँ बहौत सारे पौधे भी दिखाई भी दे रहे हैं।

मंडप को बहुत खुबसूरत सजाया गया हैं।

इस दुकान में बहुत से ग्राहक खड़े है जोेहरी उन्हे --